सामने ही एक बैंक दिख रही है जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और बैठे हैं बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है।

नीला है बैंक में एक खिड़की भी है एक गेट भी है बैंक के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है।

सामने की तस्वीर में एक जे_सी_बी दिख रही है जिसके पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है जे_सी_बी के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं उधर पे लाल कलर का कुछ सामान रखा है।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

पेट्रोल भरवा रहा है पेट्रोल पंप के आइट साइड बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उसके साइड में एक कार खड़ी है उसके साइड में एक स्कूटी खड़ी है --

सामने की तस्वीर में गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसका रंग सफेद है।

गार्डन के राइट साइड बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं सामने ही एक टीन सेट बना हुआ है।

सामने दिखाई गई तस्वीर में एक स्कूल दिखाई दे रहा है इसका रंग पीला और ऑरेंज है स्कूल के सामने --

स्कूल का नाम नगर सरकार भवन नगर पार्षद रखा गया है।

ऊपर बहोत सारे शैंपू टंगे हुए हैं सामने तरह तरह की दालें रखी हुई है जिसमें काउंटर के ऊपर बहोत सारे डब्बे हैं जिनके अंदर बहोत सारी चॉकलेट है।

सामने दिखाई गई तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम ग्रेट रोल हाउस है दुकान का अंदर से रंग नीला है काउंटर पर एक --

दिखाई गई तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला और ऑरेंज है पेट्रोल पंप के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने की तस्वीर में एक तालाब दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी चट्टाने रखी हैं पास ही में दो-तीन बच्चे खेल रहे हैं।

ऊपर नीले और सफेद रंग का आसमान दिखाई दे रहा है।